वहां पर बहोत सुंदर लाइट भी लगी हुई है और बहोत बड़े बड़े झूमर भी लगे हुए हैं।

वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी है और नीचे जींस पहनी है।

दो काउंटर में कुछ भी नहीं रखा है दो काउंटर ऑरेंज रंग के जिसमें मिठाई लगी हुई है।

वहां पर पास में हरे रंग का एक पेड़ भी लगा हुआ है और साइड में बोहोत सारे लोग खड़े और बैठे भी हैं।

उसके पास में एक और मंदिर है जहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और लोग वहां कुछ देख रहे हैं।

पास में उसके पास एक भोपू रखा हुआ है जो की गुलाबी और पीले रंग का है।

जिसके ऊपर काले रंग से लिखा हुआ है एक दो तीन चार पांच छः।

साइड में एक घर सा छोटा सा बना है नीले रंग का जिसके ऊपर लिखा है डिज्जलिंग लैंड बिगेस्ट फन पार्क --

दो आदमी ने काले रंग का और एक आदमी ने ग्रे रंग का--

जो कि हल्के गुलाबी रंग के हैं और बहुत सारे उनके बच्चे भी हैं।

ऊपर उन्होंने बहुत सारी साड़ी टांग रखी है जोकि रंग बिरंगी रंग की है।

वहां पर बहोत सारी औरतें बैठी हुई है जो की बालों में सफेद रंग का गजरा लगाई है।

वहां पर एक गुलदस्ता रखा हुआ है जिसके अंदर गुलाबी पीले और हरे फूल भी है।

वहां पर आसपास छोटी छोटी घास भी उगी हुई है और बहुत बड़े बड़े हरे भरे पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं।